महल टाइप का दिख रहा है। इसकी सजावट भी बहोत सुन्दर है और बालकनी से नीचे का दृश्य हो तो और भी सुंदर दिख रहा है।

बनाया गया है और सजाया भी गया है। यहाँ पे कपड़े की शॉप ज डोमीनोस और बहोत सारे खाने पीने की वस्तुएं दिख रही --

और नमकीन बिस्किट बिसेलरी आदि सारी चीजें मिलती हैं। आराम से अब यहाँ से कोई भी --

यह एक किले की तरह दिख रहा है। लेकिन यह एक मंदिर है। ऊपर से आसमान का दृश्य तो बड़ा ही कलरफुल दिख रहा है और --

बॉडी काफी स्वस्थ दिखती है और इन की --

पुल का दृश्य है गेट तो काफ़ी सुन्दर है और अंदर पढ़ाई भी अच्छी होती है बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं लेकिन इस टाइम छुट्टी का टाइम --